पीछे एक स्कैनर भी दिखाई दे रहा है।

अपने हाथ में घड़ी भी पहने हुआ है।

जो लोहे का कलर है ब्राउन ।

जो ग्रीन एंड ब्राउन कलर का है।

बहुत सारे कार लगे हुए हैं।

के बगल में एक और कार है जिसके ऊपर रेड कलर से कपड़े से ढके गए हैं।

जिसपे बहुत सारे फूल भी बनाए गए हैं।

सामने में एक छोटा सा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

पे नदी का कलर है ग्रे और हल्का व्हा--

के ऊपर एक मूर्ति बनाया गया है।

नीचे में बहोत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यह एक महिला का साड़ी के कलर है व्हाइट और गोल्डन ब्राउन ।

यहां पे टाइल्स मार्बल के मदद से नीचे बनाया गया है।

लकड़ी के मदद से टेबल बनाया गया है।

यह एक बड़ा सा मैदान का दृश्य है।

जो ग्रीन एंड ब्राउन कलर के है।

से बहुत सारे तार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

पहाड़ के अंदर से पानी आते हुए दिखाई दे रहा है।

सामने में एक बड़ा सा पंडाल टाइप का बना है।

कोने में एक छत्ते के ऊपर बहुत सारे महिला और बच्चों और पुरुष का दृश्य है।

हेड लाइट भी सामने में दिखाई दे रहा है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

जो आसमानी और वाइट कलर का है।

उसके उपर कंप्यूटर और लैपटॉप रखा गया है।

हार में फूल भी दिखाई दे रहे हैं जो पीला कलर का है।

जो व्हाइट कलर कपड़ा और ऑरेंज कलर का गले में कुछ पहने हुआ है।

जिसके कलर है व्हाइट और ब्लैक है।

जो खड़े है जो वाइट कलर का कपड़ा पहने हुए है और ब्लैक कलर का।

यहां पे पीछे में दीवार का कलर है व्हाइट एंड रेड ।

यहां पे बहुत सारे छोटे छोटे ईंटे हुए रखे हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे लाइट ऊपर में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो ब्लू कलर का टीशर्ट पहने हुए हैं।

यहां पे बहुत सारे व्यक्ति का कपड़े कलर अलग अलग है।

यहां पे बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रहे हैं।

बोलरो जो ग्रे कलर का है।

यहां पे एक महिला भी दिखाई दे रही हैं।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी नदी में दिखाई दे रहे हैं पत्ते जो गुलाबी और हरा कलर का है।

पे लाइट चमकते हुए दिखाई दे रही है जो व्हाइट कलर का है।

पीछे में पानी गिरा हुआ है जो भींगा हुआ है नीचे।

जो उसका दो पहिया भी है।

के ऊपर बहुत सारे व्यक्ति का सिर भी और बाल काटते हुए बनाया गया है।